सिंगिंग करते हुए नजर आ रहा है यहां पर एक स्टेज बनी हुई है जिस पर वो दोनो --

ये इमेज किसी शहर या नगर की है जोकि ड्रोन की सहायता से लिया गया है यहाँ पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहें हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

उन्होंने काले नीले गुलाबी सफेद व हरे रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं ये एक बडा हॉल लग रहा है जहाँ पर ए.सी. भी लगा हुआ है।

ये इमेज एक मैदान का है। जहाँ पर दो बच्चे बैठ कर मोबाईल में गेम खेल रहें एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है।

कुछ ऑटो रिक्शा भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दूर बोहोत सारे बच्चे भी खड़े हुए हैं जो किसी सांस्कृतिक कार्यकर्म का हिस्सा हैं।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

ये इमेज किसी डांस क्लाससेस का है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो की एक ही ड्रेस कोड पहनें हुए हैं।

ये घर एम मिट्टी का बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि देखने में गाँव का लग रहा है।

एक गाडी पर दो लड़के बैठे हुए हैं आगे वाले ने एक नीली टीशर्ट पहनी है व पीछे वाले ने एक लाल कलर की टीशर्ट पहने हुए हैं।

ये इमेज किसी छोटे से किराना की दुकान की है जहाँ पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है जैसे गोली बिस्कुट चिप्स

आदि यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जो की कुर्सी पर बैठा है ये एक छोटी सी दुकान है जिसके पास मे पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही है।